एक आदमी बैठा हुया है। और एक अ गाडी भी रखी हुई है। एक गाडी वाला आदमी भी है।

नदी के पूल के ऊपर एक गाड़ी का--